साइड में टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे ग्रीन कलर की खिड़की लगी हुई दिखाई दे रही है।

आगे की तरफ एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है जो उनको कुछ समझाता हुआ दिखाई दे रहा उसने ग्रीन कलर की जैकेट पहनी हुई है टोपी पहनी हुई --

ऊपर की तरफ तार दिखाई दे रहा है आसपास सामान रखे हुए दिखाइ दे रहे है ।

ऊपर की तरफ एक लड़का दिखाई दे रहा है जो फोटो क्लिक कर रहा है जिसने ब्लैक कलर के जूते पेहने हुए आस पास दो तीन बड़े पत्थर दिखाए दे रहा पत्थर के ऊपर कजी बनी हुई दिखाई दे रही।

साइड में कुछ लेडीज दिखाई दे रहा है जो की बैठी हुई दिखाई दे रही है जिन के पास रेड कलर और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बच्चे--

एक चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है एक बाइक दिखाई दे रही है एक अंकल दिखाई दे रहे है ।

लड़की ने पिंक कलर की टॉप और ब्लू कलर का जींस --

सामने की तरफ एक चेयर रखी हुई दिखाई दे --

साइड में एक ग्रीन कलर का घर दिखाई दे रहा है जो की काफी बड़ा दिखाई दे रहा है एक बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है एक गेट लाइट दिखाई दे --

बाहर की तरफ एक गमला रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे फूल लगे हुए दिखाई दे रहे है साइड में एक बाइक रखी हुई दिखाई दे रही है बाइक पे छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

साइड में दिवार दिखाई दे रही है दिवार पे एक तस्वीर बनी हुई दिखाई दे रही है आस पास के दीवार का कलर पिंक कलर का दिखाई दे रहा --

और एक रेड कलर का ऊपर बाल में बेल्ट लगाए हुए है जो मोबाइल से फोटो क्लिक कर रहा है। सामने की तरफ एक लड़का और दिखाई दे रहा है जिसने येलो कलर के कपडे पहने --

बहुत सारी बेंचे दिखाई दे रही है जो कि लकड़ी की दिखाई दे रही है और लोहे की दिखाई दे रही है सामने की तरफ एक खिड़की दिखाई दे रही--

बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है सड़के दिखाई दे रही है आस पास कुछ लोग आते जाते नजर आ रहे हैं ।

इडली के दो खम्बे सामने दिखाई दे रहे है इस तरफ नाव दिखाई दे रही है जो पीले हरी लाल और गुलाबी कलर की दिखाई दे रही है साइड में एक लड़की दिखाई दे रही है।

ऊपर पानी की टंकियां दिखाई दे रही है एक छोटा सा पेड़ दिखाई --